इसमें से एक कमरे पर एक पत्थरों का रैक बना हुआ है।

एक नीचे मुझे बड़ी बड़ी दुकाने भी--

मुझे इस फोटो पर एक--

बड़ा सा बुक काउंटर बना हुआ है जिसमें--

दो बड़े बड़े सोफे रखे हुए नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर एक रोड --

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा ब्रिज नजर आ रहा है।

है इस बड़े से स्कूल का रंग हल्के गुलाबी रंग का नजर आ रहा--